यहाँ पे कोई एक विद्यालय जैसा बना हुआ है जो कि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है।

यह लड़का जहां खड़ा है वहां कोई पार्क है.

और एक चपाकल हे चपाकल के ऊ के चपाकल के बगल मे गड्ढा हे एक पेड़ हे और इधर सीडी हे.

और इसमें एक आदमी है जो आसमानी कलर का शर्ट पहिरा हुआ है।

यहाँ एक बहुत बड़ा सा दूकान हे इस दूकान को बहुत रंग बे रंग बेलून से सजाया हुआ हे.

और सफेद कलर का पर्दा है इसके आगे दुकान के आगे बोर्ड लगा हुआ है।

इस दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान अ बैटरी इन्वटर मिलता है।

इसमें बहुत सारे अ-गाड़ी का समान बिक-बिक रहा है.